ये तस्वीर एक जू की है यहां पर हमें सामने एक हिरण दिखाई दे रहा है।

ऊपर हमें लाल और सफेद रंग की छत दिखाई दे रही है।

दुकान में हमें एक फ्रिज दिखाई दे रही है जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल रखी हुई हैं।

यहां पर हमें दूल्हा और दुल्हन की कुर्सी दिखाई दे रही है।

स्टेज के पास बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हमें लाल रंग का और सफेद रंग का पर्दा नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक दुकान की है जहां पर--

सामने कांच की अलमारी के नीचे कुछ दराज बनी हुई है।

यहां हमें कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं।

सामने भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।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

एक लड़का खड़ा है जिसने काले रंग का कुर्ता पहना है।

जिसने एक काली और काला लोअर पेहना हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक लड़का नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक जगह दिखाई दे रही है।

यहां पर बड़ी-बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं।

एक खेल का मैदान दिखाई दे रहा है।

नीले और पीले रंग के रिंग बनाए गए हैं।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रहा है एक चर्च --

ऊपर आसमान में हमें बादल दिखाई दे रहे हैं।

जिसने पी गुलाबी रंग की टी-शर्ट पहनी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है।

जो कि एक लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं।

पीछे हमें कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रही है एक दुकान--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

जिसकी पत्तियां पिंजरे से टकरा रही हैं।

यहां पर नीचे हमें सफेद और लाल रंग के टाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

एक बेंच दिखाई दे रही है जो कि सीमेंट की बनी हुई है पीछे हमें पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें नजर आ रही है एक बिल्डिंग --

उसके सामने दीवार पर एक बैनर लगा हुआ है।

सामने हमें कुछ औरतें दिखाई दे रही हैं और एक तरफ हमें आदमी दिख रहे हैं।

इसको फूलों से और झंडों से सजाया गया है।

मूर्ति के आसपास हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।